यह मॉल जैसा नजारा आपको देखने को बहुत कम मिलेगा बड़ा अच्छा नजारा है।

ये बड़ा सा गेट बना हुआ है। देखो यहाँ आदमी लोग अंदर जा रहे हैं देखने के लिए क्या चीज़े हैं और दिल्ली का जैसा गेट है ये इंडिया गेट जैसा --

देखो ये एक बंदा जो है यहाँ पर बैठ कर चाय पी रहा है।

श्री जगदीश हास्पिटल है | यहाँ पर साइकिल भी खड़ी हो रखी है | काँच के शीशे है लगे हुए हैं।